यहां पर रोड है रोड का मोड़ पर पुलिस यातायात का बोड लगा हुआ है।

यह फूल काफी सुंदर देखने में लग रहा है।

यहां पर एक टेबल लगा हुआ है और टेबल के चारो तरफ कुर्सी है।

का कलर दोनों का रेड ही है और--

और पेट्रोल पंप के आगे में एक खंभा भी है पेट्रोल क पंप के बगल में दो--

एक एक स्कूल में गाढ़ा कलर ऑरेंज और इधर फीका ऑरेंज है।

मंदिर का कलर पिंक है और खंबे का कलर गोल्डन --

यह एक पहिए का दुकान हैं।